कुछ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

रही है मुझे इस फोटो में--

द यादव धर्म कांटा दिखाई दे--

मुझे इस फोटो में एक अन्नपूर्णा ढाबा दिखाई दे रहा है मुझे इस--

रहा है मुझे इस फोटो में कुछ पेड़ दिखाई दे--

मुझे इस फोटो में एक पेड़ दिखाई दे--